मेरे सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

और गेट के सामने मुझे छोटा सा गार्डन भी नजर आ रहा है।

यहां पर मे बोहोत ही बड़े-बड़े और बोहोत छोटे-छोटे भी साइज के मछलियां देखने को मिल रही हैं।

और यहाँ पर मुझे चिंगड़ी मछली भी एक औरत हाथ लगाते दिख --